और इनकी है नवाज पांच टाइम की होती है।

पहला को फरियाद करते हैं --

मैं डेली अपने कॉलेज ऑटो से जाता हूं मेरा घर कॉलेज से काफी दूर है ये मैं ऑटो से जाता हूं।

नदी में नहाना मुझे अच्छा लगता है और मैं नदी में स्विम करता हूं।

डांस करेंगे दोनों एक्स दोनों वाई एक साथ और मैडम ने स्पेशली अपन दोनों का नाम लिखवाया है अच्छे से डांस डांस करेंगे दोनों में --

यार एक फूट टूटी फूटी गाड़ी है यार इसका तो एक्सीडेंट हुआ लगता है सी से सब सब टूटे हुए हैं यार इसके तो --